सिरावन है सिरावन के दोनों तरफ--

जिसमें की दुकान के बहार एक आदमी खड़ा है।

जो कि होटल का नाम है--

और होटल के बाहर एक बाइक पड़ी है।

दो चार गमले हैं गमले में अलग अलग कलर की फूल लगी है।

और दो तीन लाइटे जल रही है।

जो की खिलौने की है और इसमें से अलग अलग तरह की टेडी बियर डॉग --

इस फोटो में मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रही है।

कुरकुरे चिप्स और एक तरफ थैले--

और ऊपर छतरियां भी लगी है।

दिखाई दे रही है जो की अलग अलग तरह के नीचे मछलियों की स्टाल लगाई हुई--

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिखाई दे रही है जो की --

फोटो में मुझे एक छोटा सा मकान दिखाई दे रही है।

चार लोग इधर खड़े है और चार लेडिस इधर--